उम्म बाल काट रहा है हम ज्यादातर समय अगर हमारे बाल बढ़ जाते हैं तो हम नाई के पास जाते हैं कि ये नाई--

काफी ज्यादा जल्दी में अपनी काम की ओर निकल रहे हैं।

उस दृश्य को देखने के लिए आए हैं और वहां पे बैठे और फोटो भी उठा रहे हैं।

हम ज्यादातर बुक स्टोर में अपनी मनपसंद किताबे लेने जाते हैं।

बुक्स सेंटर आप इससे अपनी मनपसंद किताबें या कुछ ख खरीद सक--

आपको इस चित्र में एक दुकान का भीतर का चित्र देखने को मिलेगा।

कई प्रकार के मुस्लिम देखने को मिलेंगे मुस्लिम अपने मस्जिद में--

देखने को मिलेगा इस चित्र में आपको एक आदमी एक रोड़ को चूमता हुआ दिखने को मिलेगा।

और काफी अन्य सारी चीजे आपको रखी हुई मिल जाएंगी यहां पर एक बड़ा सा घड़ी दिखाई दे रहा हैं।